लो के रंग अ ग्रीन है हल हरा है और येलो है और जमुनी है।

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके आस पास और भी बिल्डिंग्स है इसके आगे मुझे एक पेड़ नजर आ रहा है और एक बहोत बड़ा ग्राउंड नजर--

यहां पर मुझे बड़ी बड़ी चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं जो ऊपर से गिरी हुई है।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

इस तस्वीर में मुझे झरना दिखाई दे रहा है जो पहाड़ी में से बहता हुआ आ रहा है यहां पे मुझे बहुत सारे छोटी छोटी चट्टानें और बड़ी बड़ी चट्टानें भी नजर आ रही हैं।

ये एक लेडी का स्टेचू है और एक खिलौने का स्टेचू है।

इसके आस-पास मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

और इधर रोड पे बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है कुछ स्कूटियां भी खड़ी हुई हैं।

इसके बाहर मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है जहां पे बरिस्ता लिखा हुआ है इसमें शीशे के दरवाजे और खिड़कियां है।

बहोत सारे भवन भी नजर आ रहे है और उनके पास पास बाउंड्रीज भी नजर आ रही है।

यहां पे मुझे इसके साथ एक रोड भी नजर आ रही है।